सीमेंट का बोरा भीं दिख रहा हैं यहाँ पे।

बहोत सारा दुकान भी है और एक बोर्ड भी लटका हुआ है। बहोत सारा आदमी है मोटरसाइकिल है और लाल कलर का कुर्सी है टेबल भी है।

यहाँ पे एक बहुत बड़ा किराना दुकान है। बहुत सारे भी रखा हुआ है और पानी भी है। फ्रिज भी है और देखने में बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा है और बहुत सारी भी है और डब्बे भी है लाल कलर का और ब्लू कलर का फ्रिज है।